ए सीशम भी लगा हुआ है और यहाँ पे जो एक इंसान है उसके हाथ में कोई चीज है।

और यहाँ पे बहुत सारे आदमी भी हैं और यहाँ पे जो है नीचे लाल कार्पेट बिछा हुआ है और यह बहुत बड़ी सी जगह है।

और यहाँ पे कुछ पर्पल कलर के फूल हैं और कुछ बहुत रंग बिरंगे फूल हैं।

ये ये एक शॉप है और यहाँ पे एक इंसान है और एक इंसान है यहाँ पे --

यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं और सबने एक जैसी ही ड्रेस पहनी हुई है।

यहाँ पे बहुत सारी कार लगी हुई है जिसमें से एक कार रेड कलर की है और एक कार अ ब्लैक कलर की है।

और यहाँ पे बहुत सारा आदमी भी है और यहाँ पे एक बरा सा बिल्डिंग भी है जिसमें --

और यहाँ पे जो एक किल औरत है उसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

और यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है और यहाँ पे एक कुर्सी है जिसका रंग हरा है।

और यहाँ पे एक टेबल है वहाँ उस टेबल पर कुछ रखा हुआ है और यहाँ पर दो तस्वीर भी लगी हुई है।

और यहाँ पे एक मिरर भी है और यहाँ पे जो जिम का सामान है यहाँ पे लोग जिम करने आते हैं ये जिम का सामान जो है वो काले रंग का है।

और यहाँ पे एक घर है जिसमें एक दो दरवाजे हैं और एक छोटी सी खिड़की है जो लाल कलर की है।

ये एक मॉल है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन है।

ये एक हॉल है और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बॉल्स रखे हुए हैं कुछ सफेद रंग --

यहाँ पे छोटे छोटे सफेद कलर के लाइट्स भी --

यहाँ पे एक पानी की बोटल भी है जो ब्लू रंग की है और यहाँ पे सीढ़ी भी है और यहाँ पे जो दीवाल है वो ऑरेंज कलर का है।

और सफेद रंग का यहाँ पे बहुत सारे सफेद कलर के लाइट्स भी लगे हुए हैं।

सारी औरतें भी हैं सामने सफेद रंग की शर्ट भी पहनी है यहाँ पे एक पेड़ भी लगा है जो हरे रंग का है।

और यहाँ पे एक छोटी सी खाली जगह भी है जहाँ पे --

और उसपे शीशे लगे हुए हैं और यहाँ पे एक गारी है जो काले रंग की है और एक गारी है जो सफ़ेद रंग की है।

ये एक स्टेशन है और यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं और यहाँ पीछे एक सफेद रंग का घर भी है।

और यहाँ पर जो घर है लाल कलर का उसमें बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनी हुई हैं।

यहाँ पे दो पर्दे लगे हुए हैं जो हरे रंग के हैं।

यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है और कुछ घास भी लगे हुए हैं और यहाँ दूर में एक हरे कलर का घर भी है और यहाँ पे जो दीवार है वो नीले रंग --

रेड कलर का है और यहाँ पे एक लाइट भी जल रहा है।

और यहाँ पे जो बहुत अच्छा डेकोरेशन है और यहाँ पे पर्पल कलर का दीवाल है यहाँ पे तीन बच्चे हैं और यहाँ पे कुछ लाइट्स भी जल रही हैं।

और यहाँ पे जो रोड है वो एक सरक है और यहाँ पे जो सरक है वो हल्की सी टूटी हुई है।